और यहां पर सामने एक ए_सी लगी हुई है।

यहां पर सामने एक महिला और एक व्यक्ति अपना फोटो खिंचवा रखा है।

और इसमें काफी सारी दारू रखी हुई है।

यहां पर एक व्यक्ती के बाल दिख रहे हैं।

यहां पर सामने एक पेट्रोल का ट्रक खड़ा हुआ है।

और यहां पर अंदर काफी सारी प्रेस रखी हुई है।

एक पंख लगा हुआ है।

यहां पर कुछ व्यक्ति और महिलाएं अपनी सेल्फी ले रही है।

और यहां पर काफी सारी बोतल सी भी रखी हैं।

और इस तरीके से सजाया जा रहा है।

और यहाँ पर सामने कितनी सारी गाड़ी खड़ी हुई है।

और यहां पर काफी सारी महिलाएं और काफी सारे व्यक्ति हैं।

यहां पर सामने एक लकड़ी की दुकान है।

और यहां पर शीशे पे कुछ पोस्टर भी छपे हुए है।--

यहां पर सामने एक दुकान है।

यहां पर काफी सारे फूल रखे हुए हैं।

यहां पर सामने कुछ प्लास्टिक की टोकरी सी पड़ी हुई है।